पूरा ग्रे लग रहा है। बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है। एक-दो पंछी है जो ताड़ के ऊपर बैठे हुए है। पानी बहोत गेहरा लग रहा है।

ये एक पूल है। पूल के ऊपर कोई नहीं है। नीचे पूरा पानी ही पानी है। सामने में चार स्तम्भ बी दिखाई दे रहे हैं। आसमान पूरा ग्रे है।

सीमेंट बालू का रास्ता दिखाई दे रहा है आस-पास पूरी हरयाली भी दिखाई दे रही है वहाँ पर।

यह पिंक पर्पल वाइट कलर के हैं। गात बने हुए हैं। कुछ महिलायें हैं जो इसमें खड़ी हैं। सामने कुछ गमले भी हैं। कुछ पुरुष भी हैं। घर भी दिखाई दे रहा है आस पास में।

एक मिक्की माउस भी हैं। ब्लू व्हाइट कलर का बैलून सजाया हुआ हैं। ऊपर लाइटिंग की हुई हैं। सामने एक फ्रेम भी दिखाई दे रही हैं। अ पूरे बैलून सजाया हुआ हैं।

ये किसी की घर की तस्वीर है जो घर का दरवाज़ा बंद है। घर का दरवाजा जो है लकड़ी का बना हुआ है। सीमेंट की सीढ़ी भी दिखाई दे रही है जिसमें मार्बल लगा हुआ है। आस-पास पाइप भी है।

एक केक लग केक है जिसमें बहुत सारे ओरियो बस्कुट किटकैट कैडबरी लगी हुई है। ये चॉकलेट केक है इसमें बहुत साड़ी क्रीम --